एक डेक्स भी दिखाई दे रहा है।

घर का कलर ब्लैक दिख रहा है।

ब्लैक बोर्ड ब्लू दिख रहा है।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

कुछ कार्टून नजर आ रहा है।

एक आम के पेड़ दिखाई दे रहा है।

कुछ पत्ते नजर आ रहे हैं।

जिसमें कुछ आदमियां खड़े दिख रहे हैं।

आसमान भी दिखाई दे रहा है।

सड़क भी दिखाई दे रहा है एक आदमी बांस लिए हुए है।

है एक बाल्टी दिखाई दे रहा है।

हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे है।

कुछ घर भी दिखाई दे रहा है।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

घर का कलर पीला और ब्लैक है।

जिसके अगल-बगल कई गाड़ियां दिख रही है।

कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

घर में लाइट बर रही है।

जिसके बगल एक घर है।

एक बस दिखाई दे रहा है।

कुछ आदमियां दिखाई दे रहे हैं।

कुछ आदमी लोग घूम रहे हैं।

घर का कलर वाइट है लाइटें बढ़ रही हैं।

कांच भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है।

हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

सड़क दिखाई दे रहा है।

जिसके किनारे एक मकान दिखाई दे रहा है।

कुछ लोहे का सामान दिख रहा है एक लड़का लेटा हुआ है।

जिसमें कुछ खिलौने का सामान दिख रहा है।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

जिसमें एक मशीन लगा हुआ है।

कुछ लाइट बढ़ रहा है।

एक पर्दे दिखाई दे रहा है।

कई घर भी नजर आ रहे हैं।

दो-तीन आदमी खड़े दिख रहे हैंएक--

जिसके अगल-बगल कुछ बच्चे और लड़के घूम रहे हैं।

जिसके अंदर कुछ लड़के जिम कर रहे हैं।

एक लड़का गंजी उतार रहा है।

कुछ बस भी नजर आ रहा है।

एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है।

गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है।

एक आदमी खड़ा दिख रहा है।

कुछ फोटो भी दिख रहा है।

जिसके बाहर गाड़ियां खड़ी है।

एक बुक वर्ल्ड शॉप दिख रहा है।

एक ईंटा भी दिखाई दे रहा है।

मर्दाने खड़े दिख रहे हैं।

पंखे दिखाई दे रहे हैं।

सड़क के बगैर एक घर बन रहा है।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

रोड के बगल एक मकान दिख रहा है।

जिसमें दो गेट दिख रहे हैं।

महर्षि चिकित्सालय दिख रहा है एक फोटो दिख रहा है।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

जिसमें घर बन रहा है।

जिसमें कई लड़के और लड़कियां बैठकर पढ़ रही है।

कॉपी किताब दिख रहा है।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

कुछ पर पौधे दिखाई दे रहे हैं।

कई औरते सालोड़ी है दो खीर क्या दिख रहा है।

घर के अंदर कई कुर्सियां दिख रही हैं।

लाइट बॉल बढ़ रहा है कुछ खिलौना दिख रहा है।

कुछ आदमी चल रहे हैं।

खड़ा दिख रहा है पटना जंक्शन का पोस्टर दिख रहा है।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

एक गाड़ी खड़ी दिख रही है।

आसमान का रंग काला है।

इस तस्वीर में घर दिख रहा है।

एक स्विमिंग पूल दिख रहा है।

एक लैपटॉप दिख रहा है।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

जिसमें कई कुर्सियां दिखाई दे रही है।

चित्र दिखाई दे रहे हैं आदमी है बैठे हुए हैं।

जिसके नीचे कई औरतें और मर्दाने खड़े दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है जिसमें कई गाड़ियां खड़ी दिख रही है।

चक्का दिखाई दे रहा है एक लाल टंकी दिखाई दे रहा है।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

रोड पर एक कार और बाइके दिख रही है ।

अगल-बगल में बाइकें खड़ी दिख रही है एक ठेला दिखाई दे रहा है जो कि ठेला पे फल बेच रहा है।

जिसके अंदर बहुत सारे केक दिख रहे हैं।

कई लड़के लोग बैठे हुए हैं।

पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

एक उह् बाइक खड़ी दिख रही है।

हरे भरे पेड़ पोधे दिखाई दे रहे हैं।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

जो कि दो आदमी है उसमें--

तस्वीर में एक सड़क दिखाई दे रहा है।

एक आदमी खड़ा दिख रहा है।